ये एक खंडर है। टूटा फूटा है और इसमें पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं और दो पौधे भी लगे हैं ग्रीन ग्रीन और घास भी सूखी हुई पड़ी हुई है।

और इसमें लोग इलाज कारने आते हैं बगल में एम्बुलेंस भी खड़ी है साइकिले भी खड़ी है और ये शटर डाउन भी है यहाँ अशोक तैमूर डॉक्टर बैठते हैं।

ये एक आनंद हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। बहुत भीड़ लगी हुई है और अ यहांँ पे बहोत सारे लोग आये हुए हैं अपना इलाज कराने के लिए।

और ऊपर से आसमान भी दिखाई दे रहा है यहां पे । ये कार है बोहोत अच्छी ख़ड़ी है यहां पे।

यहाँ पे बिसलेरी की बोतलें रखी गयी है पांच और पीछे से एक कुर्सी भी रखी हैपर्दें अच्छे लग रहे हैं।